एक आदमी एक लड़का ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहने हुए दिखाई दे रहा है।

इस हॉस्टल में हमे बोहोत सारे ए कमरे दिखाई दे रहे है।

आसमान दिख रहा है जो की ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

अंदर हमे दो चेयर दिख रही है रखी हुई।

तार दिखाई दे रहे हैं | रात --

साइकिलें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं रोड दिख --

इसमें बहुत सारा पानी है जो --